मौज लेने का एन्जॉय टाइप शादी का एक पैलेस है ये।

और ये भारतीय डाक भारतीय डाक ए.टी.एम.

ये दरवाजा है गेट और कितना अच्छा गेट है।

कितनी अच्छी बिल्डिंग है। देखो बिल्डिंग भी दो मंजिल है।

लगा हुआ है। खेती भी हुई है। शायद गेहूँ लग रहे हैं मेरे लिए।